फूल का रंग लाल गुलाबी और पीला है। कार के सभी दरवाजो खुला रखा गया है। कार के आगे वाला काच पर शेरशाह बाबा लिखा हुआ है।

एक नाई की दुकान के बाहर कुछ दो पहिया वाहन खड़े हैं | नाई की दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले रंग का मास्क पहन रखा है। वहीं --

उनके मैट्रिक्स का रंग नारंगी गुलाबी और बैंगनी रंग का है। पीछे की ओर दिवार है। जिसका रंग पीले रंग का है और दीवार पर स्विच बोर्ड को देखा जा सकता है।

एक कार्यालय के अंदर का दृश्य जहां पर सामने की और नीले रंग का शर्ट पहनकर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हैऔर वह कुछ कार्य कर रहा है।

सामने की तरफ पंडित जी बैठे हैं कुछ लोग दूल्हा दुल्हन की तस्वीर ले रहै हैं।

एक चर्च का दृश्य जहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। कुछ पढ़ रहे है।

चारों दिशाओं में घड़ियां लगी हुई है। वहीं इमारत के आस पास कुछ पेड़ उगे है और नीचे की और कुछ छोटी-छोटी स्टाल लगे हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति साइकिल लेकर जा रहा है।

पीले और काले रंग का धारियों का एक शर्ट पहना हुआ है।

नकली घोड़े बने हुए है। आसपास कुछ लोग जमा है और यात्रा के वाहन को सजाया गया है। वहीं कुछ केले के पत्ते लगाए गए है।

दो कांच लगे हुए है। व्यक्ति ने काले रंग का शर्ट पहना हुआ है। वहीं आस पास कुछ कुर्सियां रखी हुई है।